यह मुझे दो एक रेल की पटरी जाते हुए दिखाई दे रही है ये एक रेलवे फाटक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जहां से गाड़ी आते-जाते भी दिखाई दे रही है।

जहां सूरज का कलर है ऑरेंज भी देख रहा है और पेड़-पौधे भी दिख रहे है यहां पे से बहुत अच्छा सुन्दर सा व्यू आ रहा है।

इस फोटो मे मुझे एक बस आते हुए दिखाई दे रही है बस के रोड के पास में बहुत सारा कचड़ा भी देखा जा सकता है फिर एक व्यक्ति बस मे कुछ करता हुआ भी देखा जा सकता है।

एक बस दिखाई दे रही है बस भी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है बस का कलर पिंक व्हाइट और ब्लू दिख रहा है।